हरे पेड़ भी देखने को मिल रही है और आसमना का कलर उजला कलर है।

सामने एक बड़ा घर देखने को मिल रहा है जिसका दीवार ब्लू कलर के पेंट से पेंट किया गया है।

और ऊपर एक अलबेस्टर देख ने को मिल रहे है और अंदर से कुछ वाइट रंग की रोशनी आ रही है।

और यहां पर कुछ बाइके भी देखने को मिल रही है और कुछ ब बहोत सारे पेड़ भी देखने को मिल रही है।

और यहां पर एक बड़ा पाइप भी देखने को मिल रही है पाइप का कलर अह येलो है और--

पीछे गमला भी देखने को मिल रही है और गमला में छोटे छोटे पोधे है और बहोत सारे पेड़ भी देखने को मिल रहे है और आसमान का कलर नीला है।

सामने एक बरा मकान देखने को मिल रहा है जो की वाइट और लाल रंग से पेंट किया गया है।

और बहर कुछ सीरिया भी देखने को मिल रही है और एक गेट बना हुआ है जो की पीले कलर से पेंट किया गया है।

सामने एक बड़ा सा दीवाल देखने को मिल रहा है जो कि व्हाईट कलर के पैंट से पैंट की गई है।

और यहां पर एक खिड़की देखने को मिल रही है और अंदर में एक शीशा लगी हुई है।

और टेबल के ऊपर एक बोतल नजर आ रहा है और यहाँ पर एक औरत भी देख ने को मिल रही है।

एक बड़ा सा मकान देख ने को मिल रहा है जो की ईट कलर पैंट से पैंट की गयी है और यहाँ बहत सारे कच के सीसे लगे हुए है।

सामने एक बड़ा सा घर देखने को मिल रहा है जो कि व्हाईट कलर से पेंट की गई है।

और काले रंग की झिम मेसिन भी देख ने को मिल रही है।

सामने एक बड़ा सा मकान देख ने को मिल रहा है जो वाइट कलर से पैंट की गयी है।

और बहार कुछ लाल रंग की सीड़िया नजर आ रही है और यहाँ एक तिरंगा भी लगा हुआ है।

और आसमान नीला कलर का देखने को मिल रहा है और यहाँ पर बहत सारे लोग भी मौजूद है देख ने को मिल रहा है।

सामने एक बहुत बड़ा दुकान देख ने को मिल रहा है यहाँ पे एक सोफा लगा हुआ है जो काले रंग का है।

एक बहुत बड़ा मकान देखने को मिल रहा है जो की येलो कलर से पैंट किया गया है।

और उपर आसमान नीला कलर का देखने को मिल रहा है।

सामने एक बहत बड़ा बगीचा देख ने को मिल रहा है जहाँ पर एक पानी का फौआरा देख ने को मिल रहा है।

सामने एक वाइट कलर की टेबल देख नो के मिल रहे है और इस पर एक प्लेट नजर आ रहे है प्लेट का रंग काला है।

और एक बगीचा भी देख नेको मिल रहे है और कुछ पेड़ पौधे--

सामने एक बहत बड़ा रोड देखने को मिल रहा है और यहाँ पर बहत सारे बस देखने को मिल रहे है ब --

कलर वाइट है और कुछ बस का कलर लाल है और कुछ बस का कलर पीला है।

और यहाँ बहुत सारे लोग भी देख ने को मिल रहे है ऊपर आसमान नजर आ रहा हे जो की वाइट कलर की है और बहत सारे पेड़ भी है।

और बगल में कुछ छोटे छोटे घास भी देख ने को मिल रहा है और बहत सारे पेड़ भी और आसमान नीले कलर का दिख रहा है।

सामने एक गेट देख ने को मिल रहे है जो की काले रंग से पैंट की गयी है और यहाँ पर एक चमकता बोर्ड देख ने को मिल रहा है।

और एक व्हाइट कलर की व्हैन भी देखने को मिल रही है और यहां पर एक पुल भी नजर आ रही हैं।

और यहाँ पे एक लेडिस और एक मर्द देख ने को मिल रहा है यहाँ पे बड़े बड़े चट्टान भी देख ने को मिल रहे है।

एक बहत बड़ा दुकान देख ने को मिल रहा है जिसमे बहत सारे रैक है और रैक का कलर उजला है।

रैक के अंदर बहत सारे कार्टून देखने को मिल रहे है और बहत सारे साउंड बॉक्स भी देखने को मिल रहे है।

सामने दो मंदिर देख ने को मिल रहे है जो को वाइट कलर की है और बहत सारे सीड़ियाँ भी देख ने को मिल रहे है।

और एक छोटा सा बगीचा देख नेको मिल रहे है जिसमे हरे हरे घास देख नेको मिल रहे है।

सामने बहत सारे बिल्डिंग देख नेको मिल रहे है जिसमे कुछ बिल्डिंग वाइट कलर से पैंट की गयी है और --

और कुछ टावर भी देख नेको मिल रही है और कुछ पेड़ पौधे भी--

सामने एक घर दिख रही है जो की वाइट कलर से पैंट की गयी है।

और यहाँ पर एक कम्प्यूटर देखने को मिल रहा है कम्प्यूटर के नीचे दो की बोर्ड देखने को मिल रहा है।

लाल रंग से पैंट की गयी है और यहाँ पर कुछ कागज भी देख ने को मिल रहे है और ए टी एम् के अंदर कई सारे लोग भी देख ने को मिल रही है ।

हमने एक बड़ा मंदिर देखने को मिल रहा है और यहां पर कई टाइल्स देखने को मिल रही है।

और एक घड़ी देख ने को मिल रहा है जिसका रंग उजला है और एक फोटो भी देख ने को मिल रही है ।

सामने एक बड़ा सा मकान दिख ने को मिल रहा है जो की वाइट कलर ब्लू कलर और येलो कलर से पेंट किया गया है।

और एक पीला कलर का झो झोला भी देख ने को मिल रहा है और बहत सारे पेड़ भी देख ने को मिल रहा है और छोटे छोटे घास भी--

सामने को एक बड़ा पहाड़ देख नेको मिल रहा है और बहुत बड़े बड़े चट्टान भी देख नेको मिल रहे है।

और चट्टान से पानी गिरते नजर आ रहे है और ऊपर आसमान है आसमान का कलर व्हाइट है।

और एक वाइट कलर का बोर्ड भी देख नेको मिल रहा है।

और यहां ब्लू कलर के कई सारे चेयर देखने को मिल रहे है और बहोत सारे बच्चे भी देखने को मिल रहे है।

टाइल्स का कलर वाइट और लाल कलर की है और यहाँ एक टेबल देख नेको मिल रहा है जो की ब्लू कलर का है।

और कुर्सी भी देखने को मिल रहा है एक उजाला कलर का पंखा भी देखने को मिल रहा है।

और ऊपर एक चदरा रखा हुआ है और ऊपर आसमान वाइट कलर का है और बहुत सारे पेड़ भी है।

और यहाँ पर बहुत सारे मोबाईल के बॉक्स देखने को मिल रहे है कुछ लाल रंग के और--

सामने एक बड़ा सा होटल देखने को मिल रहा है जिसमें बहोत सारे शीशे नजर आ रहे हैं।

और होटल का उजला रंग से पैंट की गयी है और एक ब्लू रंग का बड़ा बोर्ड देख नेको मिल रहा है।

और कुछ छोटे छोटे गमले भी देख नेको मिल रही है यहाँ पर एक काले रंग के बाइक भी नजर आ रही है और कुछ लोग अंदर जाते हुए नजर--

लाल कलर का जैकेट पहने हुए नजर आ रही है और कुछ लाइटें भी देखने को मिल रही है जो कि वाइट कलर की है।

काले कलर का मोटरसाइकिल भी नजर आ रहा है और एक घोरा का स्मृति भी लगी हुई है।

सामने एक होटल देख नेको मिल रहा है जो वाइट कलर की पैंट से पैंट की गयी है।

और ऊपर दो पंखे भी देख नेको मिल रहे है जो की काले कलर की है।

नीचे कुछ बर्तन देखने को मिल रहे है और एक बेसिन भी देख --

सामने एक बड़ा दुकान देखने को मिल रहा है जिसमें एक कुर्सी देखने को मिल रही है को--

और ऊपर एक आसमान है जिसका रंग नीला कलर है और कई सारे टैंपू देखने को मिल रहे हैं और--

साइकिल भी है और बहोत सारे लोग यहाँ पर मौजूद है।